यहां पर मुझे एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दे रही है।

नीचे कुछ वॉश वोशन नजर आ रहे हैं। बहुत सारी पेंटिंगें लगी हुई हैं।

पंख लगे हुए हैं बहोत सारी लाइटें लगी हुई--

यहां पर मुझे एक स्टेज नजर आ रही है।

यह एक टेबल नजर आ रही है जिसके ऊपर एक कांच का टुकड़ा--

गत्ते की फे पेटियां नजर आ रही है।

ऊपर काफी सारे चिप्स के पैकेट टंगे हुए है ऊपर एक बैनर लगा हुआ है।